रेड कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है हरे कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है जो दीवारों का कलर है वो सफ़ेद है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है सफ़ेद आसमान दिख रहा है।

लाइटिंग के खम्भे दिख रहे है हमें यहाँ पर लाइटिंग के तार दिख रहे है हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सूरज भी दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर नीला आसमान दिख रहा है।

हमें यहाँ पर कुछ मकान दिखाई दे रहे है बिल्डींगस --

जोकि अँधेरे से भरी हुई है ये चट्टानो का जो कलर है वो वाइट ब्लैक थोड़ा थोड़ा येल्लो कलर का दिख रहा है हमें यहाँ पर सूखे पत्ते भी दिख रहे है।

हमें यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ दिख रहे है और जो बिल्डिंग का कलर वाइट है ब्लू है नीला सफेद आसमान दिख रहा है।

हमें यहाँ पे एक रूम दिख रहा है जिम दिख रहा है बहुत सारी ब्लैक कलर की मशीन्स दिख रही है हमें यहाँ पर एक शीट दिख रही है ब्राउन कलर की बलून्स दिख रहे हैं पिंक कलर के ब्लू कलर के--

हमें यहाँ पर एक रूम दिख रहा है वाइट कलर की दीवाले दिख रही है बहुत सारी मशीन्स दिख रही है ब्लैक कलर की वाइट कलर की एक टी_वी हमें दिख रही हैं।

हमे यहाँ पर कांच दिख रहे है दरवाजा दिख रहे है कांच के ब्लैक कलर की छत दिख रही है लाइटिंग हमे दिख रही है।

--डंबल दिख रहे है लाइटिंग दिख रही है दरवाजा दिख रहा है ब्राउन कलर के कांच दिख रहे है ।